इसमें बहोत सारी हरि भरी पत्तियां--

और बहोत सारी अच्छी गाड़ियां खड़ी है जो काफी अच्छी--

यहां कुआं है ईट है और पत्थर है।

ये एक शादी का फंक्शन है चारों तरफ घास और पेड़ पौधे है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ हरियाली है।

यहां पर बहुत बड़ा दुकान है जिसमें पौड़ी का सामान मिलता है।

यहा पर बहोत ज्यादा घास है हरियाली है।

और हवन के लिए स्थान है यज्ञ होता है।

यहां पर सभी लोग घूमने के--

गेंदे के और गुलाब के ये काफी अच्छे हैं।

यह एक होटल है जिसमें बहोत सारी लाइटें हैं।

यहां पर बहोत बड़ा स्टेडियम है।